और यहां पे कोई नहीं हे पुराना टाइम खार टाइम दिखता हे।

और नीचे बहोत सारे पत्थर टूटे हुए पड़े है एक्टिवा खड़ी है और आस पास घर है।

यह एक शॉप है यहां पे पैरट --

अर इधर एक पर्सों खड़ा हुआ हे कुछ फील कर रहा हे आइ थिंक ।

उस साइड लोहे का गेट है और वो पिक्चर्स लगी है दीवार पे --

ये मार्केटिंग एरिया है यहाँ पे राज मिस्ठान भंडार लिखा हुआ है।

ये एक सैलून है यहाँ पर एक भैया बैठे हुए है चेयर पे उनकी बियर्ड हो रही है बियर्ड बना रहे है वह ।

यह एक पार्क टाइप है और उसके आगे--